ऐ दुकानदार ये भी आदमी लोग को समान लेकर खड़ा है एतना भीड़ होता देख सक --

ये चावल लेने आया है तो कोई रासन लेने आया है देख सकते है काफी मस्त लोग दिखाई दे रहे है।

और इसमें सारे बच्चे बैठे है और कोई इधर तो कोई उधर देख सकते है मस्त लोग दिखाई दे रहे होंगे आप सब को।

और उधर बड़े भैया बच्चे अंकल सब कोई खड़ा है देख सकते हैं।

और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा।

और पीले कलर का येलो पिंक कलर लाल --

आए सब घूमने के लिए आए हुए हैं देख सकते हैं पेड़-पौधे बहोत हरे-भरे सेन --

मंतर पढ़ते हैं मतलब संगीत भजन गा रहें हैं। देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा।

हेलो गाइस देख सकते है।

हैलो गाइज देख सकते हैं यहां पे --

यहाँ पे पूजा हो रहा है देख सकते हैं --

मतलब हम दौड़े इतना दूर-दूर तक की लेजी हो गया है।

लग रहे हैं हाथ पे भी पैदल चर रहे हैं।

और पीछे में बहोत सारे देरी वगैरह रखे हुए हैं देख सकते हैं।

तब से आए गए सोफा वगैरा है।

आते भी है न लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर --

बहुत ही प्यारा लग रहा है आपलोग को भी बहुत ही जबरदस्त लुक देख सकते हैं।

यहां पे चारों साइड में --

कपड़ा रूम के बिल्डिंग है देख सकते हैं।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहां पे एक ऑफिसर है।

और यहां इतना हरा-भरा पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं और यें --

ये हम लोग का बहुत ही पुराना मंदिर है देख सकते हैं और बहुत ही प्यारा --